एवं मकान के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जिसमें एस_बी_आई लिखा गया है।

दिखाया गया इसमें एक बड़ा सा इमारत दिखाया गया है इमारत का रंग भूरा है।

हाल के अंदर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं एवं दो लोग खड़े हुए हैं।

इसके कुछ ही दूर पर दो दुकान भी दिखाई दे रहा है।

दिखाए गए छवि में एक छोटा सा ए_टी_एम दिखाया जा रहा है।

इसमें कैस्ट्रॉल बाइक प्वाइंट लिखा गया है द बाइक वर्कशॉप यूं कैन ट्रस्ट --

दिखाए गए छवि में एक प्रतिमा दिखाई गई है जिसमें एक कृष्ण भगवान अपने हाथों में बांसुरी लेकर उसे बजा रहे--

एवं उसके अगल बगल दो बड़े बड़े ताड़ के पेड़ नजर आ रहे हैं।

उसके बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया जिसमें सदाबहार नर्सरी मेन रोड --